और यहां पे सब खाना खरीद रहे हैं फ्लारिस पे--

यहां पे दो लोग चलकर जा रहे हैं और इस कैफे का एक पोस्टर भी लगा हुआ है।

टी-शर्ट पैंट और बैग पहनकर यहां पे काफी सारे पेड़ है। और एक बहुत बड़ी सी बिल्डिंग है ग्रीन कलर की। और उसमें कुछ ऐ.सी. लगे हुए है।

यह बिधाननगर गवर्नमेंट हाई स्कूल है यहां पे पोस्टर लिखा है लगा है नीले कलर का गेट है यहां पे काले कलर की--

यहां पर दो पीले कलर की स्कूल की बसे है और आसमान दिख रहा हैऔर यहां पर काफी सारे हरे कलर के पेड़ है।

यह लाइफ़स्टाइल होम सेंटर का स्टोर है जहां पर बहुत सारे लोग शॉपिंग करने जा रहें हैं और यहां पर बाहर में एक वॉचमैन भी खड़ा है टोपी और यूनिफॉर्म डाले हुए--

यह महावेदी बिरला वर्ल्ड अकैडमी है जहां पे लिखा है नाइन्टीन फिफ्टी नाइन से यह गेट है उसका गेट ब्राउन कलर का है।

यहां पे एक गार्ड भी दिख रहा है टोपी पहनकर और यूनिफॉर्म पहनकर यहां पे एस्केलेटर दिख रहा है जिस पे एक इंसान खड़ा है और यहां पे बहुत सारे पोस्टारे है।